और बहुत सारे पेड़ है एक बिजली का बहोत बड़ा है एक छोटा है।

बहुत सारे दुकाने है बहुत सारे पेड़ है बड़े-बड़े लाइट लगी हुई है।

वीर कुंवर कुवर सिंह बस पड़ाव ये वीर कुवर सिंह बस पड़ाव है किशनगंज का है।

सुधा पार्लर यहाँ पे सुधा पार्लर ये है रेलवे स्टेसन है तीन आदमी खड़ा हुआ है एक लाल रंग का घर है।

ये एक गार्डन लग रहा है जिस में तिन पेर है और बाउंड्री है।

ये एक रास्ता है बहुत सारे वाहने चल रही है एक आदमी खड़ा है एक दो आदमी रास्ता को पार कर रहा है बहुत सारे पेड़ हैं ।

बहुत सारे घास है कुछ पत्थरे है ।

और इस भवन के आगे एक छोटे-छोटे पोधे भी लगे हुवे है ।

और यहा पे दो घड़ी लगी हुई है एक डिजिटल लगा हुवा है बहुत सारे पंखे है ।